खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। ऊपर परछी दिखाई दे रही है। ऊपर छत दिखाई दे रहा है। कुछ गमले दिखाई दे रहे है। गमले में फुल दिखाई दे रहे हैं।

जो तीन मंजिल की है शटर लगी हुई है | एक गेट लगा हुआ है दूसरी मंजिल में दोनों में खिड़ --

बिजली की तार दिखाई दे रही है एक बड़ा खम्भा दिखाई दे रहा है कुछ तार दिखाई दे रहे हैं और एक आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिख --

एक ठिलिया दिखाई दे रही है। उसमें कुछ पॉकेट दिखाई दे रहे हैं। एक रोड दिखाई दे रही है। रोड में काफी सारे छिलके पड़े हुए --